बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है तोता उड़ता-सा आदमी भी एक्सरसाइज कर रहा हैं अजीब दिखने मे सुंदर लगती है हरा-भरा दिखाई दे रही हैँ।

और बहत बढ़िया मुझे लगता है देखने में और बोहोत मस्त ही दिखता है।

और यह भी दिखाई दे रहा है बहुत बढियाँ लग रहा है दिखने में और यहा पे भी बहुत बढियाँ दिखती है और यह भी दिखने में सुन्दर लग रही है।